इस फोटो में मुझे कार दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे लोहे का गेट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे छोटासा मैदान दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे गमले दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे बाउंड्री दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे दुकानें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारे दुकाने दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कार दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो मे मुझे कार दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे टोल नाका दिखाई दे रहा है।